एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां पर हमे ब्लैक ब्लैक वायर दिखाई दे रहे है यहां पे हमे लैम्प दिखाई दे रहा है लाइट की लाइट की लैम्प हमे दिखाई दे रहे है यहां पर हमें बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है।

मे ये देखिए हमे बोहोत बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग उनकी हमे घर दिखाई दे रहा है दुकान दिखाई दे रही है यहां पर बोहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है साइड मे हमे हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहा है--

यहाँ पर एक परती भी दिखाई दे रही है यहाँ पर एक हमें एक हमें यहाँ पर रोड भी देखाई दे रही है यहाँ पर ग्रीन कलर घास दिखाई दे रही है।